है एक आसमान खुला हुआ दिख रहा है एक नीचे रोड जैसा दिख रहा है जाली लगी हुई है अ फूटबाल की जाली दिख रही है ये ये बास्केट बॉल की --

भिंडी गाजर ककड़ी अदरक और बैठने का सामान भी रखा हुआ है बैठने का स्टूल भी रखा हुआ है।

और एक अ उसमे खंबा भी दिख रहा है ऊपर तार जाते हुए दिख रहे है आसमान दिख रहा है।

टेक्नोलोजी ऐसा लिखा हुआ है सामने पे दो दरवाजे दिख रहे है अंदर जाने के बड़े-बड़े से ऊपर आसमान दिख रहा है।

छोटा सा एक टाइप का पानी भी दिख रहा है साइड मे मिट्ठी का बना हुआ कुछ दिख रहा है।

स्लाइड स्लाइडिंग भी दिख रही है पानी भरा हुआ दिख रहा है आसमान दिख रहा है शेड डला हुआ है।

दिख रहा है नीचे बहुत सारी लाइन से दुकाने है एक जूतों की दुकान भी दिख रही है एक गुड़िया के बाल वाला भी दिख रहा है।